यहाँ पे टिन का गत्ता भी पड़ा हुआ है। आस-पास खिड़कियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पे एक दरवाजा है जो लकड़ी का है दीवाल काले रंग की दिखाई पड़ रही है।

यहाँ पे बहुत से कपड़े पॉलिथीन में पैक हुए अलमारी में रखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ कपडे हेंगर मे टंगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं कपड़ों को देखने हुए के लिए।

यहाँ पे एक कुर्सी पड़ी हुई है। आस-पास नालियाँ बनीं हैं। दीवाल का रंग नीला है।

यहाँ पे एक डस्टबिन है जो हरे रंग का है आस-पास पेड़ पौधे बने हुए हैं। यहाँ पे एक रोड भी बनी हुई है।

पीछे शीशा लगा हुआ है यहाँ पे शीशे में बहुत से लोग दिखाई पड़ रहे हैं जोकि कुर्सियों पे बैठे हुए है। यहाँ पे बहुत सी लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहाँ पे दो आदमी खड़े हैं यहाँ पे एक आदमी स्कूटी चला रहा है यहाँ पे एक ऑटो जा रहा है पास में एक कार खड़ी हुई है।